गाड़ी देखने मे बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसफर्मर में बहुत सा बिजली का कनेक्सन जुटा हुआ है बहुत अच्छा ट्रांसफर्मर है।